जगह का चित्र है। साफ-सुथरा आसमान दिख रहा है और यहां पर पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

दोनों ने जेन्स और शर्ट पहना हुआ है और पीछे अच्छी तरीके से सजाया गया है जैसे शादी में सजता है।

और जो कि आधी दिखाई दे रही हैं और यह पत्थर है बहोत सारे जमीन पर और यह आदमी झुक कर बना रहा हैं।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा हैं देखने मैं ऐसा लग रहा हैं की यह कोई चित्र --

ब्राउन व्हाइट और यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दिख रहा है यहाँ पर देखने पर कलर का कॉम्बिनेशन ।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा हैं जो कि देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा हैं। यहाँ पे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग हैं और --

घर नज़र आ रहा है। बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। अच्छा दिख रहा हैं।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ प देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पर --